यहां पर एक बहुत बड़ा खंभा भी है।

और यहां पर नीचे में बहोत सारी कपड़े रखे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारी साड़ियां और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पर बाहर में भी एक चैन गेट लगा हुआ जिनका कलर ब्लू है।

यहां पर बहोत सारे खंभे भी है यहां पर बहोत सारी रेके बनाई हुई है।

सामने मे एक बहुत बड़ा गैरेज है और यहां पर बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं।

सामने में एक बहोत बड़ा स्टेज है।